डंडी के फूल लगे हुए हैं जो ऑरेंज कलर के हैं जिस को लहरा लहरा डिजाईन किया गया है।

एक बड़ा सा दो ताला बिल्डिंग है जिस में वाइट कलर लगा हुआ है जिसकी बीड भी मेहरून कलर की है सामने में .

और साइड में मोर सा डिजाईन बना हुआ है जो ब्लू कलर का है उसके पीछे पूरा मेहरून कलर का कपड़ा लगा है। .

दिवार वाइट और कलर का दिख रहा है और उस में काले रंग का ईटा लगा हुआ है एक टेबल पंखा लगा--

एक बहोत बड़ा सा एरिया है जिसमें चार कुनिया चार कुनिया डिजाईन से घास उगे हुए है।

जोकि काला और सादा रंग का है ऊपर आसमान--

दो हैंडल से निकले हुए हैं रूम की दिवार का कलर पूरा वाइट है।

बड़े- बड़े पक्के के मकान भी दिख रहे है और रास्ता पक्का का है जिसमें कलर ऑरेंज ग्रीन ब्लू हैं।

रेड तरह-तरह के कलर के पैकेट सजाए गए है पीछे की तरफ छोटे-छोटे से रैक बने हुए है जिनमे कुछ बोतले रखी हुई है कुछ पैकेट है कुछ टंग रहा है।

जिसके ऊपर में वाइट कलर लगा है जिसमें लिखा कुछ हिंदी लैटर में हैं जो की--

जिसके हर तहतक में एक अलग-अलग से पैकेट रखे हुए है।

सामने में एक लेडीज जेन्ट्स है लेडीज के मुहँ में माक्स है जेन्ट्स के गले में माक्स है।